आसपास बहोत बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

यहां बहुत सारी सीढ़ियों पर मोमबत्तियां जलाई हुई है।

सामने नंबर भी लिखा हुआ है।

बिजली की तारे भी लगी हुई है ऊपर भी ए_सी के कंप्रेसर --

पीछे कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं।

यहां एक प्रिंटर भी रखा है।

एक सॉस की बॉटल भी पड़ी हुई है।

ये एक दुकान हैं दुकान पर बहौत सारे गत्ते के डब्बे रखे हैं।

ये गाड़ी सफेद रंग की है।

यहां एक पानी का टैंक भी रखा हुआ है उस पर लिखा है वाटर टैंक --